अर वैका पिछाड़ी बिटिन बड़ी बड़ी झाड़ी छन लगीं यूं का धुर पर गाड़ी भी छन खड़ी होईं।

उंडे बिटिन एक छोटु बगीचु कर भी अर बंगला का अगाड़ी बिटिन जु छ लूहा का जंगला भी एक यख लग्युं।

फंडे मा जी एक दुकान भी लगीं अर वैका एंच बिटिन जु टीन कू छपरु लग्युं वै पर नीलू रंग छ होयुं।